घर है और घर के आगे बहोत सारे घासे हैं और पीछे--

बच्चे बैठे हुए हैं एक आद लड़की खड़ी हुई है।